पर्सन दिख रही है एक लेडीस है जिसने ग्रीन कलर की साड़ी पहन रखी है हाथ में बॉल है| और यहां पर एक बच्ची खड़ी हुई है जिसने ब्लू कलर की ड्रेस पहन रखी है| एक पर्सन खड़ा हुआ है जिसके हाथ में वो बच्ची--

यहाँ पर एक चप्पल रखी हुई दिख रही है| एक सीधी रखी हुई दिख रही है एक उल्टी जो तीन कलर की दिख रही है| कुछ यहाँ पर बोरी रखी हुई दिख रही है | खाली जगह वाइट कलर की दिख रही है| आसपास में पेड़ दिख रहे हैं | पेड़ काफी ग्रीन कलर के दिख रहे हैं आसमान दिख रहा है ब्लू --

यहाँ पर काफी सारी लेडीसें भी खड़ी हुई दिख रही हैं । सामने एक गेट दिख रहा है| गेट ब्लैक कलर का दिख रहा है| और इधर ए_टी_एम साइड भी व्हीकल कुछ गेट दिख रहा है| गेट के सामने में --

कुछ बच्चे दिख रहें हैं जिन्होंने वाइट कलर का ड्रेस पहन रखी है एक यहाँ पर पोस्टर दिख रहा है पोस्टर में रेड कलर में कुछ लिखा हुआ दिख रहा है आसपास में कुछ परदे दिख रहें है वाइट और कुछ पर्पल कलर के दिख रहें हैं।

और एक पीछ पर्सन खड़ा हुआ दिख रहा है काफी सारी यहाँ पे टेबलें रखी हुई दिख रहीं हैं सामने और काफी सारा ड्राइंग का सामान रखा दिख रहा है ड्राइंग सेट रखी हुई दिख रही है।

टीचर दिख रही हैं टीचर ने येलो कलर की साड़ी पहन रखी है मास्क लगा रखा है ब्लैक कलर का और काफी सारे बच्चे बैठे हुए दिख रहे है कुछ लिखते हुए दिख रहे है कुछ यहां पर कॉपी पैन वगैरा --

इस इमेज मे चेयर जो रेड कलर की दिख रही है कुछ पर्सन बैठे हुए दिख रहे हैं आस-पास मे कुछ प्रतिमाएं दिख रही है और एक पेड़ दिख रही हैं पेड़ के पत्ते दिख रही हैं कुछ ग्रीन कलर के --

इसमे ब्लू कलर की रखी है यहां के दीवार का व्हाइट रेड और ब्लू कलर के दिख रहे हैं यहां पर काफी सारे विंडोज दिख रहे हैं विंडोज मे काफी सारे जली हो रहे है